इस चित्र में तीन टंकी रखी है लोहे की एक पर्दा डला है एक आदमी नीले रंग के कपड़ो में खड़ा है।

नीचे लाल रंग का फर्श है।